एक आदमी बच्चे का हाथ पकड़ा हुआ है आदमी व्हाइट व रेड कलर की टी-शर्ट और व्हाइट कलर की पेंट पेहना हुआ बच्चा व्हाइट कलर की टी-शर्ट और ब्लैक कलर का शर्ट।

ये कोई हाथ में अमरूद पकड़ा हुआ है किसी ने अमरुद पकड़ रखी है और आसपास पेड़ लगे हुए हैं ये बगीचे का पे ये बगीचा है यहाँ पे तरह-तरह के पेड़ लगे हैं किसी ने हाथ में लेके अमरुद पकड़ा हुआ है ये उसकी इमेंज है।

एक चर्च है एक चर्च है चर्च मे शादी हो रही है उन्होंने हार पेहना हुआ हैपीछे ही इशू की फोटो लगी हुई है और बहुत अच्छा डिकोरेट है चर्च और तीन लोग चेयर पे बैठे हुए हैं।

ये मंदिर बनी हुई है मंदिर बहुत अच्छी बनी है और बिल्डिंग में अ मंदिर में बहुत सारे संत नजर आ रहें हैं जो की मंदिर के अन्दर जा रहें हैं।

ये जिम है जिम की ये न्यू ओपनिंग हुई है और जिम में बहुत सारी एक्सरसाइज मशीन्स रखी हुई है जिम को बहुत अच्छी तरह डेकोरेट किया गया है।

ये मार्कडे शिव मंदिर है इसमें लिखा हुआ है मार्कडे शिव मंदिर में आपकी हर मनोकामना पूरी हो और मंदिर के ऊपर दो फ्लैग लगे हुए है येलो कलर के--

ये एक झरना है इस झरने के पास एक लड़का खड़ा हुआ हैजो मज़े ले रहा पानी के और एक फोटो क्लिक करवा रहा है एक पेड़ लगा हुआ है चट्टान बनी हुई है बहुत खूबसूरत और बड़ा सारे बहुत सारे पेड़ लगे हुए।

और एक बोर्ड लगा है जिसपे लिखा है आई_टी_आई कार्यालय और बाहर खूब अच्छा ऑफिस बना हुआ है दो विंडोज बनी हुई है और पेड़ लगे हुए है और एक आदमी नजर आ रहा है। जिसे --

ये एक मंदिर है मंदिर ऑरेंज कलर का पेंट है इसमें बहुत सारी सीढ़ियां बनी हुई है।

स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया की पीछे है यहाँ पे लिखा हुआ है भारतीय इसके ऊपर बोर्ड लगा है भारतीय स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया ।